और कुछ लिखा हुआ है उसपे वहाँ पर एक जाली की खिड़की है।

एक गार्डन दिख रहा है वहां पर बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं बादल दिख रहा हैं वहीं पे एक पेड़ लकड़ी कटी पड़ी हुई है नीचे और बाजू में फूल का पेड़ लग रहा है एक और नीचे हरी-भरी दू गो लगी हुई है।